लिबर ऑफिस इम्प्रेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम यह सीखेंगे कि स्लाइड्स के लिए बैकग्राउंड्स लेआउट कैसे लागू करें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
का उपयोग कर रहे हैं
बैकग्राउंड स्लाइड पर लागू किये गये सभी रंगों और प्रभावों को उद्घृत करता है जो विषय वस्तु के पीछे मौजूद हैं
लिबर ऑफिस इन्प्रेस में कई बैकग्राउंड ऑप्शन्स हैं जो बेहतर प्रस्तुतियाँ बनाने में आपकी मदद करते हैं
आप भी अपने खुद़ के कस्टम बैकग्राउंड्स बना सकते हैं
sample impressओडीपी प्रस्तुति खोलें
अपनी प्रस्तुति के लिए कस्टम बैकग्राउंड बनाएँ
हम इस बैकग्राउंड को प्रस्तुति की सभी स्लाइड्स में भी लागू करेंगे
हम इस बैकग्राउंड को बनाने के लिए स्लाइड मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे
मास्टर स्लाइड पर किया गया कोई भी परिवर्तन प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स के लिए लागू होता है
मैन मेन्यू से व्यू पर क्लिक करें मास्टर चुनें और स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें
मास्टर स्लाइड प्रदर्शित होती है
ध्यान दें कि मास्टर व्यू टूलबार भी दिखाई देंता है
आप इसका उपयोग मास्टर पेजेस तैयार डिलीट और नाम परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं
ध्यान दें कि वे दोनों स्लाइड्स अब दिखाई दे रही हैं
यहाँ दो मास्टर पेजेस हैं जिनका इस प्रस्तुति में उपयोग किया गया है
टास्क्स पैन में मास्टर पेजेस पर क्लिक करें
फील्ड इस प्रस्तुति में इस्तेमाल किये मास्टर स्लाइड्स प्रदर्शित करता है
मास्टर स्लाइड टेंप्लेट जैसी है
आप यहाँ फॉर्मेटिंग प्रिफरेंसेस सेट कर सकते हैं जो बाद में प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स पर लागू किये जाते हैं
पहले स्लाइड्स पैन से स्लाइड 1 चुनें
इस प्रस्तुति पर सफेद बैकग्राउंड लागू करें
मैन मेन्यू से फॉर्मेट पर क्लिक करें और पेज पर क्लिक करें
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करें
फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू से बिटमैप ऑप्शन चुनें
ऑप्शन की सूची से ब्लैंक चुनें और ओक क्लिक करें
स्लाइड में अब सफेद बैकग्राउंड है
ध्यान दें कि मौजूदा टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड के सामने बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है
हमेशा ऐसा रंग चुनें जो उसके बैकग्राउंड के सामने साफ़ दिखाई दे
टेक्स्ट का रंग काले में बदलें
यह सफेद बैकग्राउंड के सामने टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लायक बनायेगा
पहले टेक्स्ट चुनें
मैन मेन्यू से फॉर्मेट पर क्लिक करें और कैरेक्टर चुनें
कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स से फोंट इफेक्ट्स टैब पर क्लिक करें
फोंट कलर ड्रॉप डाउन से ब्लैक चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब टेक्स्ट काले रंग में है
अब रंग को स्लाइड पर लागू करें
कांटेक्स्ट मेन्यू के लिए स्लाइड पर राइट क्लिक करें और स्लाइड और पेज सेटअप पर क्लिक करें
फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर ऑप्शन चुनें ब्लू 8 चुनें और ओक पर क्लिक करें
ध्यान दें कि जो हमने हल्का नीला रंग चुना है वह स्लाइड पर लागू हो गया है
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
एक नयी मास्टर स्लाइड तैयार करें और बैकग्राउंड के रूप में लाल रंग लागू करें
अब सीखते हैं कि इस प्रस्तुति में अन्य डिजाइन एलिमेन्ट्स कैसे जोड़ें
उदाहरणस्वरूप आप अपनी प्रस्तुति में एक लोगो जोड़ सकते हैं
अपनी स्क्रीन के नीचे बेसिक शेप्स टूलबार को देखें
आप इसका उपयोग विभिन्न बुनियादी आकार बनाने के लिए कर सकते हैं जैसे वृत्त समचतुर्भुजस्क्वायर आयत त्रिकोण और अंडाकार वृत्त
स्लाइड के टाइटल क्षेत्र में एक आयत बनाएँ
बेसिक शेप्स टूलबार से रेक्टेंगल पर क्लिक करें
अब टाइटल क्षेत्र में स्लाइड के ऊपर के बाएँ कोने पर कर्सर ले जाएँ
आप कैपिटल आई के साथ प्लस सिग्न देखेंगे
बायाँ माउस बटन पकड़कर रखें और एक छोटा आयत बनाने के लिए ड्रैग करें
अब माउस बटन छोड़ें
आपने आयत बना लिया है
आयत में आठ हैंडल्स पर ध्यान दें
हैंण्डल्स या कंट्रोल प्वॉइन्ट्स छोटे नीले स्क्वायर हैं जो चुनित ऑब्जेक्ट के स्लाइड्स पर दिखाई दे रहे हैं
हम आयत के आकार को समायोजित करने के लिए इन कन्ट्रोल प्वॉइन्टस का उपयोग कर सकते हैं
जैसे ही आप कंट्रोल पॉइन्ट पर अपना कर्सर घुमाते हैं कर्सर एक डबल साइडेड ऐरो में परिवर्तित होता है
यह दिशा इंगित करता है जिसमें कंट्रोल पॉइन्ट मूल आकार में हेरफेर करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है
इस आयत का विस्तार करें ताकि वह टाइटल एरिया को पूरी तरह से ढ़क ले
हम इन आकारों को भी फॉर्मैट कर सकते हैं
कांटेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए आयत पर राइट क्लिक करें
यहाँ आप आयत को बदलने के लिए विभिन्न ऑप्शन्स को चुन सकते हैं
एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फिल फील्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर चुनें
मेजेंटा 4 चुनें और ओक पर क्लिक करें
आयत का रंग बदल गया है
आयत ने अब टेक्स्ट को कवर कर दिया है
टेक्स्ट को दर्शनीय बनाने के लिए पहले आयत चुनें
कांटेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए अब राइट क्लिक करें
अरेंज और फिर सेंड टो बैक पर क्लिक करें
टेक्स्ट पुनः दिखाई दे रहा है
यहाँ आयत टेक्स्ट के पीछे चला गया है
टास्क्स पैन में मास्टर पेज के प्रीव्यू पर क्लिक करें
राइट क्लिक करें और एप्ली टो अल्ल स्लाइड्स चुनें
क्लोज मास्टर व्यू बटन पर क्लिक करके मास्टर व्यू बंद करें
अब मास्टर में किए हुए फॉर्मेटिंग परिवर्तनों को प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स में लागू कर दिया है
ध्यान दें कि आयत भी सभी पेजेस में प्रदर्शित होता है
अब स्लाइड की लेआउट को बदलना सीखते हैं
लेआउट्स क्या हैं160
लेआउट स्लाइड टेम्पलेट्स हैं जो प्लेसहोल्डर के साथ कन्टेंट की स्थिति के लिए पहले से ही फॉर्मेटेड हैं
स्लाइट लेआउट देखने के लिए दाएँ पैनल से लेआउट्स पर क्लिक करें
इम्प्रेस में मौजूद लेआउट्स प्रदर्शित होते हैं
लेआउट थंबनेल्स देखें
यह आपको लेआउट लागू करने के बाद स्लाइट कैसे दिखाई देगी है इसकी जानकारी देता है
यहाँ टाइटल और टू कॉलम फॉर्मेट के साथ लेआउट्स हैं लेआउट जहाँ आप टेक्स्ट तीन कॉलम्स में रख सकते हैं आदि
यहाँ रिक्त लेआउट भी हैं
आप अपने स्लाइड में एक रिक्त लेआउट दे सकते हैं और फिर अपने खुद के लेआउट बना सकते हैं
स्लाइड में लेआउट लागू करें
पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स स्लाइड चुनें और पूरा टेक्स्ट डिलीट करें
अब दायीँ ओर के लेआउट पैन से टाइटल 2 कंटेंट ओवर कंटेंट चुनें
अब स्लाइड में तीन टेक्स्ट बॉक्सेस और टाइटल एरिया हैं
ध्यान दें कि जो आयत हमने मास्टर पेज का उपयोग करके प्रविष्ट किया था अब भी दिख रहा है
यह आयत केवल मास्टर स्लाइड का उपयोग करके संपादित किया जा सकता है
मास्टर स्लाइड में सेटिंग्स किसी भी फोर्मेटिंग परिवर्तन या स्लाइड्स पर लागू लेआउट में ओवरराइड करता है
अब इन बॉक्सेस में कन्टेंट प्रविष्ट करें
पहले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें160 स्ट्रैटेजी 1 PRO लो कॉस्ट CON स्लो एक्शन दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें160 स्ट्रैटेजी 2 CON हिघ कॉस्ट PRO फास्ट एक्शन तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें160 ड्यू टो लैक ओएफ फंड्स स्ट्रैटेजी 1 इस बेटर
आप इसी तरह लेआउट के प्रकार चुन सकते हैं जो आपकी प्रस्तुति के लिए सबसे अनुकूल है
यहाँ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि स्लाइड के लिए बैकग्राउंड लेआउट्स कैसे लागू करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
एक नयी मास्टर स्लाइड बनाएँ
नया बैकग्राउंड बनाएँ
कन्टेंट दर कन्टेंट टाइटल के लिए लेआउट बदलें
जाँचें क्या होता है
जब आप मास्टर स्लाइड पर लेआउट लागू करते हैं
नयी स्लाइड प्रविष्ट करें और रिक्त लेआउट लागू करें
टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और इनमें कॉलम्स जोड़ें
इन टेक्स्ट बॉक्सेस को फोर्मैट करें
इन बॉक्सेस में टेक्स्ट प्रविष्ट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं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
हमसे जुडने के लिए धन्यवाद160